यह एक बाइक एजेंसी है जिसमें बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई है।

और एक लड़का जो की गेट में खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर का टी शर्ट पहन रखी है और एक पेड़ भी लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक यूनिवर्सिटी कॉलेज दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ भगवानों की तस्वीरें दिखाई दे रही है।

और पीछे डिजाइनिंग गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और लोहे की पत्ती भी लगी हुई है और पीछे जंगल है और हरी पत्तियां भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर दो गेट भी लगे हुए है।

और यहां पर एक गेट लगा हुआ है शीशे का और वाइट कलर के कुछ सामान भी उतरा हुआ है।

मस्जिद के पास में एक खंभा लगा हुआ है खंबे पर एक ट्यूब लाइट भी लगी हुई है।

और घर पर वाइट कलर हुआ है और पास में एक सीढ़ी भी रखी हुई है।